यहाँ पर देख सकते है एक आदमी अमरूद लिया हुआ है जो कि बहोत ही अच्छा लग रहा है और इधर कुछ हाथ में ये लिया हुआ है डंडी तोर के और इधर कुछ जंगल उंगल भी है और ये बहोत ही सुंदर लग रहा है।

देख सकते हैं मछली-वछली जे के कैरेट में रखा हुआ है और ये पोखर से लग रहा है मछली-वछली पकड़े हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और यहां पे देख सकते हो कुछ आदमी-वादमी भी आया हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है।

देख सकते है ये कुछ लेडीज वेडीज भी खड़ा है और यहाँ पे जेंट्स भी है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में और उधर देख सकते है ये पहाड़ टाइप का लग रहा है और यहाँ पे एक आदमी टोपी-वोपी भी पेहेने हुआ --

देख सकते है ये कुछ मछली पट्टी लग रहा और ये बोहोत ही बड़ा मच्छी पट्टी हैं और इधर एक आदमी भी है।

--और पीछे माता रानी का फोटो वोटो लगा हुआ है और बहुत सार आदमी सब आए हुए है वह जिन्स विंस भी पहनें हुए है और उधर भी माता रानी का फोटो और इधर लगा हुआ है और ये बहुत ही सुन्दर है और बहुत ही खुबसूरत लग रहा हैं।

और वो ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा होगा और यह पानी का कलर थोड़ा चेंजिंग लग रहा है और ये एडिटिंग की वजह से सायद लगरा है और उधर गाछ वगेरा भी लगा हुआ --

मछली ऐंठ गया है लगता है इसे बर्फ उर्फ़ में रखा गया था और ये बहुत बड़ा मछली था और इधर ये देख सकते है मछली-उछली पर बर्फ उर्फ़ भी रखा हुआ है ताकि यह मछली खराब न हो।

यह बहुत सारी लेडीज़ उडीज़ सब आई हुई है और यह बहुत ही बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है सब एक जगह है।